ये तसवीर में हमे काफी ज्यादा पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते है की पेड़-पौधे काफी घने लग रहे हैं।

ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की तस्वीर है आप इस तसवीर में देख सकते है हमे न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंड अधिकारी शर --

ये कागज से बने कुछ पेड़ हैं जो आप देख सकते है फूल पत्तिया बनाई गई हैं ये कला बहुत अच्छी होती है जिसमे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आप देख सकते है की ये कितनी मेहनत से ये बनायीं गये--

और फेबिकीविक और डेलॉक्स भी रखा गया है बहुत ही शानदार ये बनाए गए हैं।

एक आगे उनकी शिक्षक बेठी है जो उनको योगा करवा रही है आप देख सकते है योगा के स्थान पर कितनी सा सफाई की गई है यह स्थान काफी बड़ा दिख रहा है।